बस के सामने एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

और पांच आदमी भी दिख रहे हैं।

जिस शटर के पीछे एक कांच का शीशा लगा हुआ है।

इस तस्वीर में दो आदमी नजर आ रहे हैं दो ऑटो भी खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में दो औरतें भी दिख रही हैं।

औरत के पास में कुछ बहोत सारी गाड़ियां भी नजर आ रही है।

रोड पर एक आदमी बाइक पर नजर आ रहा है इस तस्वीर में क्रेन भी दिख रही है।

यह एक बहुत बड़ा कॉलेज है कॉलेज के बाहर कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में कई व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे है।